और येह बहोत सारी भीड़ दिखाई दे री--

और बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है और बड़े पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यहां बहुत सारी कुर्सी बिछी दिखाई दे रही है चार पांच।

यह एक ऑट नजर आ रहा है।

यहां एक मेज भी रखी है मेज के ऊपर बहुत सारे डिब्बे दिखाई दे रहे है।

और लाइटे भी नीचे से दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कुर्सी मेज भी--

और यह धर्मशाला सी नजर आ रही है।

यह बहोत बढ़िया घर दिखाई दे रहा है।

और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

वहां एक केमेस्ट्री की दुकान नज़र आ रही है।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

इधर चार दिवारी का लोहे का जाल लगा हु दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे मिट्टी इसके आसपास कपड़े दिखाई दे रही है।

बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

यह एक घर नजर आ रहा है।

और बहुत सारा सामान उधर रखा दिखाई--